जूते पहना हुआ है चशमाँ लगाए हुए है।

बड़े पेड़ भी हैं जो के हरे हुए हैं छोटे पेड़ भी हैं।

पोस्टर लगा हुआ हैं एक बोर्ड लगा हुआ हैं एक गाड़ी खड़ी हुई है एक‌।

बोर्ड लगा हुआ हैं जो कि नी ले कलर का हैं उसके बाद एक और बोर्ड लगा हुआ हैं।

छड़ी हुई हैं दीवारे हैं पोस्टर --

बहुत सारी अच्छे से तैयारी हो रही हैं झालर लटकी हुई हैं लाइट लगी हुई हैं।